यहां बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है।

सामने की तरफ दीवारों पर कुछ पुरानी मूर्तियों जैसी आकृति बनी हुई है।

बहोत सारी कुर्सियाँ है जो की सभी नीले रंग की है।

बिल्डिंगे चारो तरफ से सफेद रंग से रंगी हुई है । यहाँ बड़े बड़े --

यहाँ छत पर सफेद रंग के बल्ब लगे हुए हैं।

वे रिक्शा खड़ी हुई दिखाई दे रही है। सामने के तरफ बड़े- बड़े पेड़ लगे हुवे है। वे पीछे के तरफ एक खंभा दिखाई दे रहा है। खंभे पर तार फैली हुवी दिखाई गई है।

यहाँ मिट्टी का ढेर लगा हुवा है। यहाँ सीमेन्ट की बजरी भी पड़ी हुवी है। यहाँ बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुवे है।

यहां एक व्यक्ति लकड़ी के बल्ले पर ऊपर खड़ा हुआ है।

यहां नीचे बहुत सारा पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पानी का फुव्वारा दिखाई दे रहा है यहाँ बहोत सारे सफ़ेद रंग के बल्ब लगे हुए हैं।

सामने की तरफ ये बड़े पहाड़ दिखाए गए हैं | पहाड़ पीछे की तरफ फैले हुए हैं ।

ऊपर की तरफ हाथ करता हुआ दिखाई दे रहा है व एक व्यक्ति का सिर्फ पैर ही दिखाया गया है जो की --

यहाँ दो लड़के वे अन्य बालिकायें बेठी हुई दिखाई दे रही हैं जो की कागज से कुछ ना कुछ बनाती हुई दिखाई गई हैं।

दीवार पर एक खिड़की लगी है।